पीछे एक बड़ी लंबी दीवार दिखाई दे रही है।

कुछ बांस के डंडे दिखाई दे रहे हैं।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

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बहुत सारा गिरता हुआ सुंदर पानी दिखाई दे रहा है।

काफी सारे फोटो लगे हुए हैं।

एक डम्पल दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है चर्च के बाहर।

लाइटें दिखाई दे रही हैं बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

तरबूज दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

आंख का निशान छपा हुआ है।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

उपर कुछ गत्ते के बॉक्स रखे हुए हैं।

केले के कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी का पाइप दिखाई दे रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक कार --

यहां पर मुझे कुछ बच्चे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ परदे लगे हुए हैं।

दो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं।

कुछ छपा हुआ है। एक छोटा सा आला दिखाई दे रहा है।

काफी सारी चेयर रखी हुई है।

कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

कार दिखाई दे रही है।

पानी का ए कुछ पाइप पड़े हुए हैं।

बिजली के बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

घास फूस खड़ा हुआ है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

बिजली के बहोत सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें काफी सारी मिठाई रखी हुई हैं।

अंटा दिखाई दे रहा हैं।